कुछ कांच भी लगे हुए हैं उस पे कलर भी है।

ये गार्डन का एरिया लग रहा है कुछ पौ पौधे लटके हुए हैं लाइट भी है अलग-अलग प्रकार के कुछ ल टंगे है।

और साथ में एक पेड़ भी दिख रहे है।